व्हाइट पट्टी लगी हुई है और उसके बाउंड्री ग्रीन कलर की है। वहां आसपास बहुत ही पेड़-पौधे लगे हैं और वहां--

वह सब वुड के बने हुए हैं और उस पर--

यह एक घर है घर के अंदर एक कमरा बना हुआ है और वहां एक अलमीरा बनी हुई है।

यह एक दुकान है यह बहुत ही बड़ी दुकान है इसके अंदर।

और यहां बहुत ही सुंदर डेकोरेशन की गई है।

एक कार को उन्होंने एक ब्रिज के ऊपर हुआ है उसे अघोष की ज--

यहां पर बहुत ही सुन्दर-सुन्दर मूर्तियां हैं।

और यह बहुत ही बड़ी दुकान है।

और यहां आर्ट बर्किंग का काम किया हुआ है।

यह एक चर्च है जहां पर बहुत सारे लोग खड़े हैं और दो लड़कियां खड़ी है उन्होंने हाथ में मोमबत्ती पकड़ी हुई है।

उसका नाम यू_के पिज़्ज़ा इज वर्कर्स है और वहां बाहर बहोत सुंदर लाइटिंग की हुई है।

अंदर बहुत सारे लोग बैठे हैं। वहाँ ब्ल्यू कलर कि लाइटिंग कियी गई हैं। बाहर बहुत अधिक मात्रा में बाइक हैं और वहाँ पिज्जा और बर बर्गर --

एक औरत फोन पर बात कर रही है एक आदमी खड़ा है।

चादर बिछी हुई है और वहां एक मेज पड़ा है दो चेयर्स --

यह एक ऑफिस है जिसके अंदर बहोत सारे पोस्टर लगे हुए हैं सीनिरिस लगी है और वहां स्माइली --

उसका कलर व्हाइट है उसके आस पास बहुत अधिक मात्रा में पेड़ पौधे हैं कुछ पौधे छोटे और कुछ बड़े भी हैं।

वहां पर गुब्बारों की डेकोरेशन है गुब्बारों का कलर ब्लू ग्रीन व्हाइट गोल्डन --

फोटो शूट की जाती हैं जो की छोटे बच्चों की पार्टी में।

और यह डेकोरेशन फ़्ल अखबारों की है रे--

वहां ब्लैक कलर की बुल्ट बाइक है।